के नीचे जमीन दिखाई दे रही है और घाँस भी उगी हुई दिखाई दे रही है यहा पे बहुत सारे लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है वहा पे दिखाई--

कूछ टब भी दिखाई दे रहा है और टायर भी दिखाई दे रहे यहा पे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है और बहुत सारी बाइके भी रखी हुई है यहाँ पे कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे है यहाँ पे गाड़ी भी दिखाई दे रही है।